यह दृश्य एक इमारत का दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में रिक्शे खड़े दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट में कुछ कुर्सियां व टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य मेले का दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक बच्चा दिखाई दे रहा है।